यहां पर कट्टे रखे हुए हैं यहां पर एक सिव सीमेंट पड़ा हुआ है बहुत सारा।

जिसमें यहां पर बहुत सारे कपड़े टगे हु--

बाहर दो चार टंकी रखी हुई है।

पर बहुत सारे गेट लगे हुए है नीले रंग के--

यहां पर पीछे लोहे की ग्रिल लगी हुई है।

तीन गेट लगे हुए हैं जो दो चार कमरे बने हुए हैं।

और भीड़ लग रही है बहुत --

यहां पर एक दुकान है जहां पर बहोत सारे आइटम रखें हुए हैं।

और यहां पर लाइटिंग लगी हुई है उसके बगल में एक और दुकान है जहां पर बहोत सारा आईटम है।